एक दुकान है वहाँ वायर का कुछ रखा हुआ है।

एक घर है लोहे का गेट लगा हुआ है लोहे की जालियाँ लगी हुई है एक बच्चा पानी दे रहा है पौधों में पाइप हैं।

बिजली के पाइप भी लगे हुए हैं।

वहाँ पे मूर्ति रखी है इंसान है पॉलिथीन है कुंडी है।

फ्लावर्स की दुकान है वहाँ पे पिंक रेड येलो व्हाइट --

एक नदी है पुल है।

ग्राउंड है ग्राउंड में लोहे की पाइप लगे है जालियां फिट है झाड़ है झूले लगे हुए हैं पीछे गार्डन बना हुआ है।

--घर है बाउंड्री है लोहे का गेट है।

नदिया है वहाँ पे बड़े पत्थर रखे हुए हैं पहाड़ है झाड़ लगे हैं।

शॉप है शॉप में रैक है कांच के मशीन है लाइटिंग लगी हुई है जाने के रस्ता है।

इटा रखी हुई है कुंए जैसा बना हुआ है झाड है हरी -हरी घास--

ग्राउंड है वहाँ पे जालियां लगी हुई है लोहे के पाइप है पेड़ लगे हुए हैं।

हिरन वगैरह है ब्लू आसमान है।